सभी दिक्क्त हो तो सब बचाया जाये इसीलिए इसको किया जा रहा है| बहोत ही अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे | बहोत ही बढ़ियां।

और एक एक चीज मिल रहा है देखिए इतनी बस है बहोत ही बढ़िया बस है ये आप लोग के लिए लाया गया है।

इससे अंजादा लगा सकते हैं आप लोग कितना मस्त है और ये बहुत ही गजब का चीज है। ये आप लोग के ही बन रहा है। आप लोग चाहेंगे तो इसमें कमरे आप लोगों को मिल --